जिम अच्छा से सजा हुआ है और उसके आगे में और जिम है।

पेड़ दिख रहे हैं और और उसपर एक बहुत बड़ा गेट है।

और एक ठो लाल फिता टंगाया हुआ है और पिंक कलर का पेंट किया गया है और बहुत ही सुंदर दिख रही है जीप --